पार्क में कुछ लोग खड़े टहल रहे हैं उपर से हल्का जमीन पर जैसे पानी गिरा हुआ है।

हरी-हरी घांस कहीं कच्ची जमीन बगल में बड़े-बड़े पेड़ आइसक्रीम के कुछ ठेले भी किनारे पर लगे हुए हैं ।

कुछ मछलियां वैसे रखी कुछ मछलियों का घोस उसके बगल एक आदमी भी खड़ा जो उसकी मदद के लिए है।